मुझे यह दृश्य बहुत ही प्यारा लग रहा है।

और जो बहुत ही अच्छा भगवान के प्रति है।

कुछ लोग यहां पर खड़े हुए हैं जो कि गेट पर जा के बात कर रहे हैं।

और यहां पर कुछ जंगल है जिसमें हिरण घास खाती नजर आ रही--

और इसे देखने पे बहुत मन को अच्छा लगता--

और यहां बहोत सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है।

छोटे बच्चे और बड़े बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं।

जो प्रोडक्ट को देख कर के एक जगह से दूसरी जग--